कच्चे आम हैं पक्के आम हैं एक तो दिख रहा है कि केसरी आम है।

जैसे कि दिख रहा है यहां पे हरे रंग का दिया हुआ है।

यह लोटस हॉस्पिटल है जोकि वलसाड में है।

कुर्सियों के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग वहां पे बैठ सके --

दिख रहा है की काफी सारे लोग बैठे हुए है और इंतजार कर रहे --

किनिया सारी की सारी खेती बाड़ी में इनका इस्तमाल होता है।

बाइक खड़ी है दो तीन लोग वहां से जा रहे है।

पत्थर की चट्टानें हैं हरी भरी घास है।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइड है जहां पर कुछ लोग अलग अलग चीजे कर रहे हैं।

काफी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए।

बहोत ही सुंदर कारीगरी की गई है मंदिर के ऊपर --

काफी सारे अलग अलग तरह के पुर्जे हैं।

यह एक कॉलेज की बिल्डिंग है जो कि छत्तीसगढ़ में है।

मैदान है जहां पर बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे है।

पुरानी पुरानी बिल्डिंग है एक पीले रंग की है नीले रंग की है।

हल्के सफेद स्लेटी पीले रंग की है।

और सफेद रंग का इनका यूनिफॉर्म होता हैं।

यह एक ज्वेलरी शॉप है ज्वेलर्स जहां पर काफी सारे लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं।

बाकी बहोत अच्छी व्यवस्था की गए लोगों के लिए अलग अलग --

एक बिल्डिंग है जहां पर गुजराती में मीरा केंद्र लिखा है।

जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर है और बाकी तीन मंजिलें हैं।

जहां पे दो वेस्टर्न वॉशरूम है और एक बाथरूम है।

यहां पर काफी सारे छोटे छोटे फोन मोबाइल फोन्स रखे गए हैं।

इयरफोंस है चार्जर केबल्स है यू_एस_बी वायर है चार्जर है।

छोटी छोटी फोटो फ्रेम्स भीं हैं और काफी सारे कबड भीं हैं।

यह एक सुपर मार्केट है। जहां पर बहुत सारे अलग-अलग तेल के कनस्टर रखे गए हैं।

यहां पे उनके मसीहा जीसस क्राइस्ट का फोटो भी लगा है।

काफी टेबल चेयर रखी गई हैं कुर्सियां रखी गई है।

आईने यानि मिरर लगाए गए हैं ताकि लोग उसमें देख सकें।